दुकान के सामने है। दुकान में हमें कई चीज़े जैसे कुरकुरे बिस्किट फेयर हेंडसम मधु--

तकिए भी नजर आ रहे हैं और बगल में दो ओढ़ने के लिए --

जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्रेस में हमें --

रंग-बिरंगे बल्ब हैं इसलिए यह बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं।

ये डिवाइडर से दो भाग में डिवाइड हो गए हैं।

लाइट्स भी करने वाली चींजे उस नजर आ रही हैं।

स्कूल के जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और इसमें कई सारी खिड़कियाँ भी नजर आ रहे हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और नीचे में --

ये रंग का बोडाफोन लिखा हुआ है और बोडाफोन लाल कलर पर लिखा हुआ है।

जैसा की आप देख सकते हैं ये दृश्य एकदम --

में कोई ज्यादा बड़ा नही लग रहा है वह केवल एक ही महिला नजर आ रहा है और --

नजर आ रहें है और एक सक्श बैठा हुआ भी है हमें नजर आ रहा --